रखा हुआ है ऐसा लगता है कि कोई बर्ड या कोई --

इस तस्वीर में हमको लगता है की कोई लगता है की एक्सपायर कर गया है उसकी आत्मा की शांति के लिए कुछ बच्चे--

ये किसी एक मंदिर का सीन आप लोग को नज़र आ रहा होगा जिसमे आपको एक बरगद का पेड़ दिखाई दे रहा होगा और--

ये किसी एक ए.टी.एम. का तस्वीर आप लोग को नज़र आ रहा होगा जिसमें --

करैली बोदी कोहड़ा भिंडी नेनुआ --

कुछ व्यक्ति एक दुकान पर भीड़ लगाए हुए नज़र आ रहे होंगे जिसका अजंता डायरी हैं ।

कई सारे फूल आपको नज़र आ रहे होंगे जो कि एक साइड रेलवे का नज़र आता है और बाकी ये फूल रोड वाला --